ऊपर में आसमान दिखाई दे रहे है कुछ बादल दिखाई दे रहे है वा--

कुछ कुआं जैसी दिखाई दे रही है बाउंड्री व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है बाउंड्री के उस पार में बहोत सारे--

पेड़ दिखाई दे रहे है मंदिर व्हाइट और रेड कलर में दिख --

कुछ खेत टाइप का दिखाई गया है जहा पर ग्रीन कलर की बोहोत सारी --

और रेड कलर में बाइक लगायी हुयी दिखाई दे रही है ऊपर में आसमान दिखाई जा रहे है निचे जमीं की मिट्टी कुछ पिली--

और सामने में जो एक बाइक लगी हुयी है उसके सामने में कुछ व्हाइट कलर का फ्रेम जैसा--

किसी मेले को दिखाया गया है जहाँपर बोहोत सारे जुले अ --

घासे दिखायी दे रही है कुछ खेत सूखे हुए येल्लो जैसे दिख रहे है दूर दूर में कुछ टॉवर दिखाई जा रहे कुछ लोग दिखाए जा रहे है।

किसी शॉप को दिखाया गया है जो की व्हाइट कलर का उसपे रेड कलर की बोर्ड लगी हुयी है और येल्लो कलर --

व्हाइट कलर की गयी है और सैंटा क्लॉस की पिक्चर बनायीं गयी है स्टार लगे हुए है बहुतसारे स्टार टंगे हुए दिखाई दे रहे है छोटी छोटी लाइट्स बल्ब लगी हुयी--

पीछे में कुछ सूखे हुए पेड़ दिखाई दे रहे है कुछ टॉवर जैसा कुछ दिखाया जा रहा है पीछे में घास दिखाया जा रहा है बगीचे जैसा कुछ दिखाई --

किसी ऑफिस को दिखाया गया है जिसके सामने के दरवाजे कांच के दिखाई गयी है और व्हाइट कलर से कुछ बोर्डर जैसे की हुयी है।

किसी मिठाई जैसे शॉप को दिखया गया है जहा पर --

ये बोक्सेक्स में बोहोत सारे मिठाईया केक्स जैसे कुछ दिखाई जा रहे है सामने में एक बॉ --

ग्रीन कलर में लगा हुआ है निचे में कारपेट दिख रही है कुछ जमींन दिखाई जा रही है ऊपर में लायटिंग दिख रहे है।

कुछ वॉल के ऊपर में कुछ बोटल जैसे लगे हुए हैं। उसमें ग्रीन येलो में कुछ लिखा हुआ है। सामने में--

ए_ सी भी लगे हुए है कुछ मशीने निचे स्टैंड में लगी--

ऑरेंज और रेड कलर येल्लो और रेड कलर में माले दी गए है और एक व्हाइट रेड --

सजाये गए है बगल बगल में कुछ गुलदस्ते सजाये गए निचे की --

ट्रेन लगी हुई है जोकी येलो रेड कलर की बोगी दिखाई जा रही है और रेड --

और व्हाइट मे दिखाया गया है नीचे प्लेटफॉर्म भी दिखाए गए हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर--

कुछ पोल टाइप के दिखाए गए कुछ पेड़ पौधे भी दिखाए गए हैं।

दे रगे हैं छोटे छोटे ट्यूबलाइट जलते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे लोग के भी दिखाई दे रहे हैं बाहर मे कुछ बैनर जैसा व्हाइट कलर का बोर्ड लगा हुआ दिखाई--

आ फेसवॉश कुछ है गिफ्ट वगेराह मूर्तियाँ छोटी छोटी लगी हुईं--

रेड कलर में टाइल्स सी रखी हुई है नीचे पिंक कलर के घोड़े में कुछ साइड में--

ये स्काई कलर का सामने में गेट दिखाया गया है ट्रक --

पेड़ दिखाए जा रहे हैं बॉउन्ड्री के पीछे साइड में एक घर दिखाया गया है जो व्हाइट कलर में दु तल्ला या तीन तल्ला मंजिला बना हुआ है साइड से भी स्काइ कलर की घर--

मोबाईल जैसे कुछ दुकान को दिखाया गया है जहाँ पर ये बहुत सारे--

बहुत सारे प्लास्टिक और बोक्सेस दिखाई दे रहे हैं और शामने में दो लैपटॉप लगी हुई है दोनों लैपटॉप ऑन है एक लैपटॉप --

कई कलर मे दिखाई जा रही है और एक लैपटॉप ब्लैक कलर मे जिसमे रेड कलर के फूल दिख--

समाने रखी हुई है सामने में टेलीफोन रखा हुआ है।

सामने मे एक हॉल जैसे दरवाज़े दिखाई दे रहे है जिसमे--

खम्बा या पूल टाइप का है जो की बहुत लम्बा सा दिखाई जा रहा है कुछ टंकी टाइप की दो गाड़ीयाँ दिख रही है एक वाइट कलर मे एक ग्रे कलर मे।

मट्टी के पास स्टैंड में मट्टी वाले जमीन में स्टैंड में एक साइकिल र लगी हुई है रेड ब्लैक कलर की उसके नीचे के टायर --

ब्लैक दिख रहे है येलो कलर मे दिख रहे है कुछ लोग गार्डन मे बैठे दिख रहे है मैदान मे ग्रीन कलर की घासे है कुछ कुछ जगह--

मुझे ऐ_सी ब्लैक कलर में दिख रही हैं। कुछ घरे दिखाए गए हैं खंभे दिखाए--

किसी जगह को दिखाई गयी है जहाँ बहुत सारे पेढ़ दिखाई जा रहे है कुछ ग्रीन कलर मे कुछ काले कलर मे।

नीचे बहोत सारे लोग भी दिखाई जा रहे। कुछ बोडे लगी हुई दिखाई दे रही है। एक वाइट कलर की हाफ बोर्ड दिखाई दिए। कुछ लोग जाते कुछ लोग आते हुए दिखाई दे--

लकड़ी की बेन्चेस टाइप दिखाई जा रही है।

और कुछ सामने मे दुकान जैसा भी दिखाया गया है और बॉस की बहुत सारी ग्रिल्ले दिख रही है कुछ लोहे की ग्रिल्ले दिखाई गयी है।

लिखा हुआ है सामने में एक लड़की साइकिल लेकर के जाती हुई दिखाई दे रही जिसके फेस को हाइड किया गया सामने में दो लड़के दिखाई दे रहे एक छोटा बच्चा दिखाया जा रहा है नीचे जमीन--

इसी नदी को दिखाया गया है जिसके--

बाहर साइड मे कुछ रोड़े दिखाई गयी है हरी हरी घासे दिखाई गयी है।

बहुत सारे खंबे मे लाइट जलते हुए लाइन बाय लाइन दिखाई गये है सामने मे सीमेंट वाली सीढ़ी टाइप की--